तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक थिएटर मूवी चल रही है जो कि प्रोजेक्टर में चल रही है जो कि एक शादी की वीडियो दिखाई दे रही है।

हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहां पे हमे रात का समय दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमें नीचे कुछ फर्श पर टाइल्स लगी दिखाई दे रही हैं। यहां पर हमें कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है जो कि आपस में कुछ बात करते दिखाई दे रहे है। यहां पर भी अँधेरा हो रहा है। यहां पे लाइट पड़ी अलग दिखाई दे रही --

एक कम्प्युटर दिखाई दे रहा है। अंदर हमे काउंटर दिखाई दे रहा है जिसका रंग हमे पीला और सफेद दिखाई दे रहा है। यहा पर हमे कुर्सिया भी दिखाई दे रही है जिसका रंग हमे काला है जोकि काफी उची दिखाई दे रही है यहा पे शटर दिखाई दे रहा है --

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रहीं है जिसके ऊपर में बोहोत सारे कांच लगे दिखाई दे रहे हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सड़क दिखाई दे रही यहाँ पे हमें सड़क पे बहुत सारे कारें दिखाई दे रही है रिक्शा दिखाई दे रहे हैं कुछ बाइकें दिखाई दे रहीं हैं सड़क पर हमें कुछ लोग चलते दिखाई दे रहें है यहाँ पर हमें।

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाॅं पर हमें एक बेनर दिख रहा है उसके ऊपर हमें लोंडरी करके नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें कुछ --

वीर मे हम देख सकते है यहाँ पर हमे एक चर्च दिखाई दे रही है यहाँ पे हमे चर्च की सिम्बल दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे कुछ सूचनाएं लगी दिखाई दे रही हैं बोर्ड पे यहाँ पे हमे --

सफ़ेद और क्रीम कलर की दिखाई दे रही है। नीचे हरी-हरी घास दिखाई दे रही है। पीछे हमें कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है जहाँ से हमें कुछ जंगले दिखाई दे रहे हैं झाड-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बाइक दिखाई दे रहीं हैं जो की हमें काली कलर की दिखाई दे रही हैनीचे हमें हरी भरी घासें दिखाई दे रही छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहें।

वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें होटल का रूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमे बेड दिखाई दे रहा है सफ़ेद।

कप दिखाई दे रहे है बेंचे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पर्दे दिखाई दे रहे हैं दरवाजा दिखाई दे रहा है दूर।

आसपास हमें सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमे बड़े-बड़े झाड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमे घना जंगल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमे बिजली के खंबे दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं खुला आसमान भी यहाँ पे हम देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाॅं पर हमें बोहोत सारे बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ ड्रॉइंग बनाते हुये दिखाई दे रहे हैं यहाॅं पर हमें सीज़र दिखाई दे रही है।

पेन पेंसिल से दिखाई दे रहे हैं फेविकोल दिखाई दे रहा यहाँ पे हमें बोहोत सारा कचरा नीचे दिखाई दे रहा यहाँ पे हमें कार्ड बोर्ड शीट दिखाई दे रही है यहाॅं पे इतनी बड़ी खिड़की दिखाई दे रही है यहाँ पे बिल्डिंगे दिखाई दे रही यहाॅं पे पेड़ दिखाई दे रहे सूरज की रोशनी आती --

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे बहुत सारी मिर्ची और ब मटर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमे एक आदमी का हाथ दो हाथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमे बोरी के कट्टे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर थैली दिखाई दे रही है।

वीर ममें हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक सब्ज़ी की दुकान दिखायी दे रही हैं यहाँ पर हमे बहुत सारी सब्जियों दिखाई दे रही --